स्वच्छता और शुद्धता का प्रतीक लिखा हुआ है पियो इंडिया जिओ इंडिया लिखा हुआ है।

पेड़ वगैरह भी दिख रहे हैं और ये यहां पे आप देख सकते हो।

आप यहां पे देख सकते हो यहां पीछे फोटो लबी दिख रहा है।